मस्जिद है यहाँ पे गेट बना हुआ है अंदर मस्जिद में जाने के लिए बाइक सब खड़ा हुआ है। बाहर में कई तरह के बाइक हैं इसमें और ग्रीन कलर का भी है और रेड कलर का भी बाइक है। साईकल लगा हुआ है ठेला लगा हुआ है।

देखने मे अच्छा लग रहा है । लाल कलर से उजला कलर से पेंट किया हुआ है देखने मे बहुत सुंदर है ।